यहां पर एक कुल के बोर पर एक मोती बनी हुई है।

यहां पर सामने एक कांच है।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

यहां पर एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे कांच है।

यहां पर एक अंकल जी कुछ बना रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक लाइट भी जली हुई है।

यहां पर बहुत सारे समुद्र और नदी है यहां पर बोहोत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

फल फ्रूट का ठेला है इस ठेले पर मतीरे अमरुद मौसमी और सेब रखे हुए हैं।

यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे--

यहां पर एक टेबल भी रखी हुई है।

यहां से आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बेंच और यहां पर कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

जह नीला कलर का दिखता है।